ये भी एक गार्डन है जो की इधर बहुत ही अच्छे-अच्छे तरीके के झूले दिखाई दे रहें हैं और स्लाइड्स भी दिखाई दे रहीं हैं हमेऔर हमे चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है हमे और ये बहुत ही अच्छा सॅटॅलाइट --।